ये एक चाय की दुकान का सीन है यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो फोन चला रहा है और यहाँ पे एक छाते रखा हुआ है।

ऑरेंज और सफेद और ऊपर लाइट जल रही है ए_सी भी लगा हुआ है यहां पे।

और तरह तरह के पंखे है नीचे स्टूल भी रखा हुआ कुर्सी भी रखी है बहोत सारी चीजें हैं यहां पे सब इलेक्ट्रॉनिक्स का समान है।